उसके बगल में एक रेड और ब्लैक कलर का ट्रैक्टर लगाया हुआ है।

इसके सामने एक ब्राउन कलर का घर बनाया गया है ऊपर में व्हाइट कलर का सीटा दिया गया है।

एक प्रो जोकि ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है और बहुत सारी महिलाएं जो की वाइट कलर के पहने हुए हैं और बहोत सारे जो साड़ी पहने हुए हैं जोकि ब्लू कलर के रेड कलर के पहने हुए हैं।

दीवार पे एक नंबर लिखा हुआ है उसके बगल में एक रेड कलर का है जो की आग बुझाने वाला है।

ऊपर में बैलून रखी गई है जो की येलो नीला और पिंक कलर का है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है जिसके आगे एक छोटी सी नदी बह रही है इसमें बहुत जद्दा पानी है।

सामने एक रेड कलर का कारपेट और दो ग्रीन कलर का कारपेट बिछाए हुए हैं।

उसके बगल में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो की स्विमिंग पुल में तैर रहे है।

महिलाएं जो कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और पुरुष जो कि ब्लू कलर के और येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पास में बहोत सारी पानिया रखी गई है आस पास ग्रीन कलर का कारपेट बिछाये गये है।

पास में टिशू पेपर फेंका गया है उसके बगल में किनले की वाटर बोतल रखी गई है।

पास में ऑरेंज कलर का बहुत सारा डिब्बा रखा गया है बगल में पीली कलर की एक मशीन रखी गई है।

पास मे एक डिब्बा रखा गया है जिसमें बहोत सारा मोबिल है उसके सामने एक डेस्क है जिस पे बहोत सारी सामग्री रखी गई है।

एक व्यक्ति जो कि रेड कलर का टी_शर्ट पेहना हुआ है और एक व्यक्ति जो कि ग्रीन कलर का टी_शर्ट पेहना हुआ --

ये बगल में एक ईटा फेंका गया पास में एक बोड़ा फेंका हुआ है बगल में बहुत सारी साइकिले हैं जो कि काले रंग की है।

बगल में पीली कलर की बहुत सारी पौधे हैं उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पेड़ है।

पास में एक पिलर है जो कि ब्राउन कलर का है उसके बगल में छोटी-छोटी हरी-हरी घासे हैं।

यह एक रूम का दृश्य है जिसमें तीन रेड कलर की कुर्सियां लगी हुई है।

ऊपर में एक व्हाइट कलर का फैन लगा हुआ और काले रंग की जो कि रस्सी है जो नीचे गई हुई है।

यह एक मार्केट का दृश्य है जिसके सामने बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ।

बगल में बहुत सारा गुलदस्ता टांगा हुआ है उसके नीचे एक चेयर रखी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है।

पास में बहुत सारा कार्टून रखा गया है ऊपर में कैलेंडर है जिसमें सरस्वती माता का फोटो बनाया गया है ऊपर जो दीवाल है वो ब्लू कलर की है।